हुआ है यहां पर बहोत सारे गुब्बारे लगाए गए हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की है इसमें बहुत सारी--

यहां सड़क पर कई रिक्शा जा रही है।

और यहां कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां कई पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

और दीवारों पर पेंटिंग करी--

ये तस्वीर एक बहुत बड़े कार्यालय की है।

इसमें बहोत सारा सामान --

मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है।

ये पर्दे बिल्कुल नए हैं इनका रंग अलग अलग है।

इसमें बहुत सारी हरी भरी घास--